जो पेड़ आम का लग रहा है उसके नीचे--

और महिला औय साड़ी पहनी हुई है।

घर बहुत शानदार लग रहा है देखने में के पिंक कलर की कलर किया हुआ है उसके नीचे में एक कार लगा हुआ है।

जो की एलो कलर की है और एक एलो ट्रक के आगे में बहोत सारी ट्रक लाइन लगी हुई --

यह एक बाल काटने की दुकान है।

यानि कि धो रहा है। एक इंसान वो गाड़ी को धो रहा है और धोने के पर्पज में गाड़ी रोड पे है।

ये पंडाल का कलर बहोत टाइप का है।

जिसमें एक हांडी भी है और दो पानी का बोतल है।

कोल्ड ड्रिंक और पानी का बोतल है।